रोड के किनारे एक भारत पेट्रोल का पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा--

ब्लैक कलर का यहां पे डिवाइडर बना कर के रखे गए हैं।

वो सीजर है वो कर रहे हैं।

यह एक घरनुमा हमे दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे हॉल है यहाँ पे बहुत सारे गाड़िया पार्क है।

रखे गए हैं इलेक्ट्रिक प्रेस है।

यह एक मदरसे का फोटो है यहाँ पे--

जो कि मुसलमान समुदाय के लोग पहनते हैं।

वह एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

काफी बड़ा दिखाई पड़ रहा है लाल कलर से नीचे--

यह एक क्रिश्चियन वाले फोटो है यहां पे जो है कुछ सेलिब्रेशन किया जा रहा है।

एक कच्ची हमें रास्ता दिखाई पड़ रहा है और ये रास्ता जंगल में दिखाई पड़ रहा है यहां पे कोई भी आदमी आ जा नहीं रहे--

रोड बिल्कुल साफ है और यहां बहुत सारे पेड़ पौधे हैं बहुत ही बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं।

यहां पर क्लासरूम ही है ये क्योंकि वो ब्लैक बोर्ड है पीछे और यहां पे शादी का सेट अप जैसे बना कर के रखे गए हैं।

आ क्रांतिकारियों को दर्शाती हैं यहाॅं पे बहोत सारे क्रांतिकारी हैं जो भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए जा रहे हैं।

कुछ लोग खड़े भी हैं यहां पे काम से अ--

नीले कलर का टी शर्ट पहने हैं और सभी को आइसक्रीम सेल कर रहे हैं।

सामने जो है हमे रोड भी दिखाई दे रहा--

वहाँ एक नदी का फोटो है नदी का पानी जो है धुँधला है और थोड़ा सा गन्दा सा लग रहा है धूमिल सा लग रहा है।

पानी बहोत नीचे है और काफी साफ है।

इसे यहां लाया गया है इसकी एक्सीडेंटल क्लेम करने के लिए।

यह एक मछली मार्केट है यहां बहोत सारी--

खिड़की हमे दिखाई पड़ रही है और यहाँ पे नीचे जो है टाइल्स और वो भी रखा हुआ लगा कर के रखे गए है।